अं बकरियां भी दिख रहे हैं काफी सारे बकरियों को खाने के लिए खाना भी दी जा रहे हैं।

कलर किए हुए दिख रहे हैं। सारे बच्चे कलर कर रहे हैं और टीचर उन लोगों को देख रहे हैं।

जिसके ऊपर दो ब्लैंकेट दिख रहे हैं।

पास में पेर भी दिख रहे हैं।

ये एक तिहास जैसा दिख रहा है इनमें पटाखे फोड़े हुए दिख रहे हैं।

प्रिंट किए हुए दिखाई दे रहे हैं।